तो यहाँ पे येलो ब्लू कलर का दिखाया गया है इसमे कुछ लड़कियों को बनाया गया है और यहाँ पे कुछ चेयर्स लगी हुई है जिसमे एक लड़की बैठी हुई है और यहां पे हमे ऑटो कार दिख --

और इन-नीचे यहाँ पे एक-एक रोड है जिसपे कुछ गाड़ियां दिखाई गई है गाड़ी मे एक अ कार जिसमे व्हाइट कलर दिखाया गया है पीछे में बड़े-बड़े पड़े भी --

इस इमेज मे हमे यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई गई है मूर्ति के पास यहां पे डेकोरेशन हो रही है डेकोरेशन मे मालाए लगी हुई है।

इस इमेज में हमे एक मार्केट दिखाया गया है मार्केट में बहोत सारी गाड़िया दिखाई गयी है कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई है।

इस इमेज मे हमे यहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है लड़की ने टॉप पहन रखा है पर्पल कलर का और नीचे ब्लैक जीन्स पहन के रखा हुआ हैं।